बैंक है यहाँ पे शटर लगा हुआ है ये पूरे इलाहाबाद बैंक का ही एरिया है।

सीढ़ी बना हुआ है पीले कलर से बलू कलर से पेंट किया हुआ है ऊपर घर है।

उजले कलर का है बहुत सुंदर लग रहा है पार्क टाइप का ही बना है आगे में।

यह रोड पे ट्रक चल रहा है बहोत सुंदर रोड बना हुआ है फोर सिक्स लाइन हो सक --

ऊपर आसमान दिख रहा है बगल में बस का शीशा दिख रहा है।

डिज़ाइन किया हुआ है छाप किया हुआ है बहुत सुंदर लग रहा है देखने में।

योजना हो रहा है उपर गुबारा लगा हुआ है | गुबारा कई कलर के हैं कलर --

चीज को खोज रहे हैं देखने में अच्छा लग रहा है बहुत सुन्दर जगह है चारों तरफ।

और नीचे पानी है पानी का भी कलर असमान के कलर के जैसे दिख रहा है।

और उजला कलर से पेंट किया हुआ है नीचे पर्पल कलर से पेंट किया हुआ है ऊपर आसमान दिख रहा है उजले कलर का ।

बहुत अच्छा लग रहा है ग्रुप - उरूप में बैठके अपना काज कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है चप --